पेड़ सबके पीछे एक मकान है जो व्हाइट --

आम के पेड़ और केला के पेड़ ईके पीछे --

और यहाँ पर बहुत सारा पेड़ है बड़ा-बड़ा ।

इ एगो बहुत बड़ा जंगल है एमे बहुत सारा पेड़ है और छोटा-छोटा पेड़ सब भी है। बहुत ज़्यदा ही जंगल है। ए बहुत घना है और एमे हरा-भरा सब दिखाई द रहल हेय कुछ लम्बा-लम्बा पेड़ सब भी है।